जहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी सामानें बिक रही है। यहाँ पर लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वो सामान खरीद रहें हैं। बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ है और कुछ घर भी हैं।

महापुरुष का प्रतिमा भी है। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा है जहाँ पर लोग चल रहें हैं। यह बाजार काफी साफ-सुथरा लग रहा है। इस बाज़ार में एक दो छोटे-छोटे पेड़ भी हैं।

यह एक किताब का दुकान है। यहाँ पर सभी प्रकार की किताबे मिलती हैं। सभी कक्षा के अध्यन के लिए किताबे मिल जाती हैं और कलम भी मिलते हैं।

यहाँ पर एक पार्क को दिखाया गया है। इस पार्क में दो छोटे-छोटे बच्चे खेल रहें हैं। यह पार्क काफी हरा-भरा है। यह देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है। इस पार्क में --

यहाँ आज कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। शायद यहाँ आज खुला नहीं --